उसमें बहुत तरह की क्रीम पाउडर तथा अह तेल की अलग अलग ब्रांड्स रखी हुई हैं।

दिए गए चित्र में बहोत सारी सब्जियां दिख रही है।

अ होटल के जो वेटर्स है वो कुछ काम कर रहे हैं।

प्रवेश द्वार पे दो हाथी रखे हुए हैं।

दिए गए चित्र में एक बहोत बड़ा मंदिर दिख रहा है।

सुपर मार्केट में बहोत सारी चीजे बहोत अच्छी तरह से रखी हुई है।

दिए गए चित्र में बहुत सारी औरतें तथा लड़कियां तथा छोटे बच्चे दिख रहे हैं।

और सबको अ उपहार दिया जा रहा है।

दिये गये चित्र में एक मस्जिद के अंदर का रूम दिख रहा है।

तथा सामने वाले दीवार पर तीन खिड़कियां दिख रही है।

माइक्रोवेव अलग अलग तरह की स्त्री यहा तथा आर_ओ की अलग अलग वस्तुएं बेचने के लिए रखी है।

वहां पे बहोत सारी ये अलग अलग चीजें बेचने के लिए रखी गई है।

उसके ऊपर अमर टी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा हुआ है।

झरने में से बहोत सारा पानी बोहोत तेज गति से नीचे गिर रहा है।

झरने के दोनों बाजू पे बहोत सारी हरी हरी वृक्ष दिख रहे हैं।

वहां पे बेचने के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन्स रखे हैं।

यहाँ नीचे के दो सेल्फ में अलग अलग तरह की बिस्किट्स रखी हुई है।

हर एक गुंबज के ऊपर ध्वजा लगाई हुई है।

बाहर एक बड़ा सा पानी का ड्रम भी रखा हुआ है।

दिए गए चित्र में एक फर्नीचर का शोरूम दिख रहा है।

वहां पे अलग अलग रंग के तथा अलग अलग डिजाइन के कुछ सनमाइका रखे हुए हैं।

अंदर की साइड पे दो टेबल फैन वॉल के ऊपर लगाए हैं।

जिसमें पापुलेट रावत रावत झींगा मूवी ऐसी मछलियां दिख रही है।

यह एक चित्र होटल के डाइनिंग रूम का है जहां पे चार टेबल तथा बहोत सारी कुर्सियां दिख रही है।

दिए गए चित्र में तीन लड़कियां नाच रही है।

पानी के अंदर दो नाव दिख रही है।

उसको पकड़ने के लिए एक सिल्वर कलर का पेपर उसको लगाया गया है।

दिए गए चित्र में एक सब्जी मंडी दिख रही है।

सबसे आगे हरि मिर्च फिर लाल मिर्च फूल गोबी आलू तथा गाजर ऐसे अलग अलग सब्जियां रखी--

दिए गए चित्र में दो मजदूर दिख रहे है।

दुकान मे बहोत सारी चीजें बेचने के लिए रखी है।

तथा उसके बाजू के बॉक्स में प्लेयर तथा बटरफ्लो ऐसे लिखा हुआ है।

एक आदमी पेन खरीद रहा है उसने नीले रंग की पेन हाथ में लीहुई है।